ये एक आफिस का केबिन है और यहां पे इसके दो केबिन बने हुए है और यहां पे जो है कुर्सी रखी हुई है लैपटॉप रखा हुआ है।

और यहां पर एक आदमी है और यहां पर गुटका खैनी और बहुत सारी टॉफी ये सब चीजें टंगी हुई हैं।

और यहां पर पान मसाला है क्यूआर कोड भी है और एक अंदर आदमी बैठा है जो ये सामान बेच रहा है।

और यहां पर जो हैं कॉन्टर है जिसमें मिठाईयें रखी है बहोत सारी और ये सीसे का काउंटर है और इधर भी दूसरी तरफ भी काउंटर है।

और उसमें बहुत सारे बिस्किट भी रखे हुए हैं और चॉकलेट रखी है।

वो टूटी हुई है लोगों ने तोड़ दिये और इसके चारों तरफ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।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

और दो तीन आदमी भी बहुत सारे आदमी भी हैं तीन चार क्रेने हैं और वो जो हैं और कुछ सामान हैं जो ढका हुआ हैं लाल कपड़े।

यह टेप का ये शोरूम है और यहां पर हर तरीके का टैप मिलता है मतलब टंकी मिलती है यहां पर।

एक मेडिकल है मेडिकल की दुकान है दवाइयों की और यहां पर बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है और यह बिजल के नाम से ही अह रेस्टोरेंट है और यहां पर एक गेट लगा हुआ है इसका।

यहां पर बारिश हो रही है और ये बहोत ज्यादा ट्रैफिक जाम है यहां पर धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं यहां पे एक आदमी इधर बाइक से खड़ा हुआ है।

और यहां पर एक बैठने के लिए दूसरी मेज रखी हुई है एक आदमी यहां खड़ा हुआ है।

ये यहां अ क पर एस बी एसबीआई की यहां पर बैंक है और ऊपर की तरफ इसमें टाटा स्काई के--

यह एक ये एक समाणर्लय है और पश्चिम चंपरण भोतिया का बेतिया का यहां पर एक स्टैचू लगा हुआ है भीमराव अंबेडकर का।

और अंदर भी बहुत सारे लोग हैं और इधर की तरफ भी रास्ता है तो कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं और एक आदमी है जो बाइक पर बैठा हुआ है।

यहां रिफाइंड रखा है साबुन रखा है जवे रखे हैं शेहेद रखा है।